उपरोक्त फोटो में दिखाया जा रहा भवन काफी पुराना दिख रहा है।

जाग रहा है और कुछ सोच रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

यह मैदान बहुत अच्छे तरीके से निर्मित नहीं है बीच-बीच में इसमें गड्ढे भी दिख रहे हैं।

इस धार्मिक स्थल के लिए बहुत सारे सीढ़ियों का निर्माण किया गया है।

और अ बहुत ही आत्मिक अ शांति प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा है।

और इस कार में अंदर में कुछ अअ पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं।

उस में से एक बंधन बैंक का ए.टी.एम. भी है।

और सैलून कर्मचारी भी इस बालक का बहोत ही ध्यान से बालों को काट रहे हैं।

ये फोटो किसी भीड़-भाड़ वाले अ व्यस्तम ईलाके की सड़क का है।

जिसमें डीज़ल टैंक परिलक्षित हो रहे हैं।

और इसमें जो लाइट्स प्रकाशित की गई है।

और अन्य व्यक्ति हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हुए --

ये यात्री बसें विभिन्न स्थानों पर आने-जाने के लिए अ उपयोग में लाई जाती हैं।

इस बाजार में बहुत सारी छोटी-बड़ी दुकाने कुछ ठेलो पर और कुछ जमीन पर ही लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और इसमें अन्य प्रकार की साज-सज्जा भी सुन्दर दिख रही है।